यहाँ पे साइड में एकम लिखा हुआ है।

और यहाँ पे मिट्टी की मेडे भी दिखाई दे रही है। पीछे यार अच्छा सा पहाड़ है।

सर्विस सेंटर की फोटो है किसी बाहर की। यहा पे और यहाँ पे कुछ बहोत अच्छी ग्रीन कलर का शटर भी है इसमें एक।

और यहाँ पे सब बिल्डिंग लाल कलर की दिखाई दे रही है। एक पिंक कलर की टी-शर्ट पहन के शर्ट पहन के एक अंकल जा भी रहे हैं।

इसमे दिख रहा है कि अब इसको बनाया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है।

और सारे पत्ते झाड चुके हैं और नऐ पत्ते आने वाले हैं जोकि हरे-हरे दिखाई दे रहे हैं।

इस मे मोबाईल नंबर लिखे हुए हैं। फटोग्राफी वीडियोग्राफी --

सामने यहाँ पे ग्रेडिंग सी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए।

बोहोत सारे लोग अलग-अलग तरह के कपड़े पहन के यहां पे खड़े हैं। बोहोत ज्यादा भीड़ हैं।

और आगे यहां पे खाली जगह पड़ी हुई है। जगंल के बीच में ये मंदिर बना हुआ है।

लोगो ने ब्लू कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है यहाँ पर तीन बल्लेबाज़ और गेंदबाज दिखाई दे रहे है।

सब ने अलग-अलग तरह के कपड़े पहने हैं। सब लोग मंदिर के दर्शन करने आए हैं।

ब्राउन कलर का फर्नीचर है यहाँ पर।

जिसमें एक व्हाइट कलर की स्कूटी खड़ी है।

और यहाँ पे वाइट लर कि दो गाड़ियां खड़ीं हैं। एक फोरचुनर है दूसरी गाड़ी पता नहीं कौन सी है।

जो कि सेल टावर है यहाँ से लो यहाँ पीछे और यहाँ पहड़िया दिखाई दे रही हैं।